सामने हमें एक बडू सा बाजार दिख्याणु लग्युं और ते पार तरीपण जी क कूड़ा-कड़ा बनाया और रोड क त्रिपा तरीपण दुकान-दकान है और बिजली का खम्बा-खुम्बा नि दिख्याणु --

यखा मा एक बड़ू सा मैदान दिखेणु लग्युं मैदाना का पार्थिर फंडी बिल्डिंग बुल्डिंग बणाईं।

कुर्सी भी दुकानदारा का भेंटण के।

यखा फुंडे हम एक दुकानम दिखेण लगीं भारी बड़ी जै पर लेज -लूज कुरकुरा कारकुरन लटकायां।